इस चित्र में एक पुरुष मोबाइल में बात करता दिखाई दे रहा है जिसके सर पे टोपी लगी हुई दिखाई दे रही है एक पुरुष जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसने मास्क लागया हुआ है।

इस चित्र मे आइडिया शॉप दिखाई दे रही है | फुग्गे लगे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं | शोकेस दिखाई दे रहा है | दो कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं।

गुलाबी रंग का दरवाजा बना हुआ दिखाई दे रहा है गाड़ियां रखी हुई दिखाई दे रही है गार्डन के अंदर बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पेटी बजाते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं नीचे मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही--

पेड़-पोधे दिखाई दे आसपास बहुत सारे घर दिखाई दे रहें हैं छत कि रैलिंग दिखाई दे रही है।